यहां पर आप एक बस देख ने को मिल रही होगी जोकि पैसेंजर को लेके जाती है यहाँ पे एक सामने पैकेज देख ने को मिल रहः है इसके अलावा यहाँ पर एक खुरसी रखी है।

इसके अलावा आपको खेत देखने को मिलेगे सामने और ऊपर आसमान भि है जो काफी सुन्दर लग रहा है।

यहा पर आपको आसपस बहोत सारे पेड़ देख ने को मिल रहे है सामने एक घर भी है जोकि लाल कलर का है उसके अलावा ऊपर एक आसमान है।

यहा पर आपको देख ने के लिए पोस्टर दिख रहा हैयहा पे लिखा हुआ हैडेंटल क्ल्निक जो एक डेंटल क्ल्निक है जिसमे आप अपने दांतो को इलाज करवा सकते है।

इसके अलावा आप को सामने नीले कलर का एक घर देखने को मिलेगा सामने बहोत सारी साइकिल खड़ी है गाड़ी खडी है इसके अलावा माहौल देखिये उपर का आसमान देखिये कितना प्यारा हैं।

यह पर आप एक मेडिकल स्टोर देखने के लिए मिल रहा है यहा पे एक अंकल खड़े हुए है जोकि मेडिकल के मालिक है।